क अलग अलग कलर के कपड़े दिखाई दे रहे हैं और इसमें बहुत सारे--

एक टेबल रखा हुआ है एक चेयर रखी हुई है।

और पर्दे लगे हुए हैं लाइट --

एक बैंक दिखाई दे रहा है।

जिसमें भीड़ दिखाई दे रही है भीड़ में बहुत सारे लोग--

एक कॉलेज दिखाई दे रहा है।

और एक तालाब भी दिखाई दे रहा है तालाब के किनारे बहुत सारे गमले दिखाई दे रहे--

साला नीले कलर में लिखा हुआ है और ओपन जिम --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

एक होटल दिखाई दे रहा है।

स्टै स्टैचू को बनाए गए है।